यहाँ डांस हो रहा है डांस प्रोग्राम हो रहा है जो ई लोग डांस कर रहे है यहाँ--

और दिखा रहे है डांस करके सबके हाथो में तिरंगा झंडा है और सब कोई बैठे हुए है यहाँ--

खरीदने के लिए आते है सामान--

पर इनके पास बहुत ज्यादा लोग आते है बनवाने के लिए आते है अपनी गाड़ियों का इंजन और भी कई तरह तरह का इंजन यहाँ बनाने का काम करता है ये--

यह एक ए. टी. एम. है।